और गैलरी टाइप का बना हुआ है।

इसमें छोटे-छोटे मूर्ति बने हुए हैं दीवाल पे ऊपर में रैलिंग लगा हुआ हैं और दीवाल में कुछ पेंटिंग किया गया हैं।